ये बाहोत शानदार जंगल है।

मेज़ा की मैं देख सकता हूँ यहाँ कुड़सियाँ रखी हैं।

यहाँ हम भी जाते हैं।

यहाँ पर हमें ई देवाल दिखाई दे रही है।

ये एक वेयर हाउस सा दिखाई पड़ता है।

यहाँ पर हमें कुछ गाड़ियाँ वाले दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर मैं देख सकता हूँ की --

यहां पर मैं देख सकता हूं कि ये आलू चाल रहा है।

यहां पर मैं कोच खंभे देख सकता हूं।